सामने एक येल्लो कलर का डेस्क दिखाई पड़ रहा है | यहां पे इस के ऊपर कुछ ट्रॉफी और मैडल रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो की गोल्डन कलर में दिख रहे हैं।

यह पहाड़ जैसा दिखाई पड़ रहा है। यहां पर बहुत सारे घांस दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे सामने बहोत सारे नाव दिखाई पड़ रहे हैं जिसमे दो-दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। और उनके हाथ में डंडे जैसे दिखाई पड़ रहा है। और सामने पानी दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रे कलर में दिख रहा है।

सामने बहुत बड़े-बड़े पत्थर दिखाई पड़ रहा है गुफा की तरह बना हुआ है। यहाँ पर दीवाल पर कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह पूरा ग्रे कलर और ब्राउन कलर दिखाई पड़ रहा है। नीचे कुछ नोकीला पत्थर जैसा दिख रहा है। सामने कोई एक बॉय खड़ा हुआ है।

ये स्टेज दिखाई पड़ रहा है। यहां पर कुर्सी रखी हुई है। जो कि व्हाइट रंग की है। यहाँ पे दो लोग बैठे हुए दिखाई पढ़ रहा है। यहाँ पे मीट जैसा कुछ रखा हुआ है। नीचे ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ है। यहाँ पे ग्रीन कलर का कारपेट भी बिछा हुआ है।

एक मंडप जैसा सजा हुआ है। इसमें यहाँ पर सामने एक आदमी खड़ा है। सामने उसने ब्लू कलर का शर्ट पहनी हुई है। दिखाई पड़ रहा है यहां पर ब्लू और ग्रीन कलर यहां पर ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट चल रही है। और यहां पर नीचे ग्रीन कलर कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है। साइड में एक स्टैंड बना हुआ दिख रहा है।

यह एक मकान दिखाई पड़ रहा है वाइट कलर में देखिये सामने एक आदमी बैठा हुआ है। यहाँ बाइक पिलर दिया हुआ है और दरवाज़ा भी दिया हुआ है। साइड में एक बड़ा-सा है जो की ग्रीन कलर का दिख रहा है।

सामने छत में बहुत सारे पटरे बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं| साइड में कुछ मिस्त्री काम कर रहे हैं| यहाँ पे एक आदमी खड़ा है| साइड में एक बाल्टी रखी हुई है | पीछे एक बिजली का खंभा दिखाई पढ़ रहा है उसमे तार जाती हुई दिख रही है|

नीचे कुछ चप्पल उतरी हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे नीचे पानी भी बह रहा है। यहाँ पे नीचे ब्राउन कलर ग्रे कलर पे है साइड में। एक चापुद्र बना हुआ है जो की रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है।

सामने एक शटर दिखाई पड़ रहा है जॉकी येलो कलर का दिख रहा है और जॉकी खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है नीचे ज़मीन ग्रे कलर की दिखाई पड़ रही है और रेड कलर की भी दिख रही है।

यहां पर टॉवल दिखाई पड़ा हुआ दिख रहा है एक आदमी लेटा हुआ दिखाई पड़ रहा है साइक में एक और आदमी दिखाई पर रहा है और वहाँ हाथ में मशीन लिए हुए हाथ में और वहाँ कुछ सामने उसमे नीचे ग्रे कलर का फर्श दिखाई पड़ रहा है।

इसमें लाइट भी चमक रही है ब्लू ग्रीन कलर की। पीछे कुछ पेड़ ग्रीन और ब्लाक रंग मे दिखाई पर रहे हैं। यहाँ पे गार्डन जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ घांस लगी हुई है। यहाँ पे जीने बने हुए हैं।

यहाँ पर दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है। यहाँ पर एक फेन भी दिखाई पर रहा है। यहाँ पर सामने काफी लोग खड़े हुए दिखाई पर रहे हैं। पीछे एक बैलून भी लगा--

एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे सामने एक आदमी उसके पैर मे चोट लगा हुआ है। और एक आदमी सही कर रहा है और उसने कान पे फ़ोन लगा रखा है। यहाँ पे पानी की बोतल भी दिखाई पड़ रही है।

यहाँ पे उसने ब्लैक कलर का कवर ओढ़ रखा है यहां पे सामने एक शीशा भी दिखाई पड़ रहा है साइड में एक टेबल भी रखी हुई दिख रही है --

सामने तीन लोग खड़े हुए हैं जिनमें से तीन लेडीज है और एक जेन्ट्स खड़ा हुआ है। उसने ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ है। पीछे एक दीवार दिखाई पड़ रही है।